फ्रेम में एक वाइट कलर का एक इमारत है।

जो के कच्चे एरिया में है। इसके आस-पास बोहोत सारे पेड़-पोधे लगे हैं। मस्जिद के अंदर बोहोत से लोग भी हैं।